ये कोई सम्मेलन हो रहा है यहाँ पे देखिये चार जेंट्स और एक लेडीज़ बैठी हुई है दो जेंट्स है जो खड़े है।

और सब सामने की ओर देख रही है और देखिए पीछे है नदी या तालाब जैसा दिख रहा है जिसमे काफी सारी छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहें हैं।

और एक महिला खरीदने के लिए खड़ी है और देखिए एक आदमी है जो रोड पे चलते हुए नजर आ रहा है सामने कि ओर बढ़ते हुए और देखिए पीछे एक बड़ा --

का बहुत बड़ा स्टेशनरी की दुकान है और देखिए यहाँ पे एक व्हाइट कलर और ब्लैक कलर के कपड़े पहने एक आदमी खड़ा है जो कुछ लेने के लिए है।

बगल से देखिए एक स्टील की सीढ़ी भी दिखाई दे रही है जो ऊपर जाने का रास्ता है।